विजय पुस्तक भंडार का पोस्टर लगा हुआ है।

लोग बैठे हुए हैं कुछ घूम रहे हैं यहां पर।

बैलून लगे हुए हैं काफी तरह के गुब्बारे लगे हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है।

ते पड़ी हुई हैं मोटरसाइकिल हैं यहां पर लाइटें लगी हुई हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हैं मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं ट्रक खड़े हैं।

काफ़ी सारे लोग है बच्चे है।

कूल के बच्चे हैं टीचर खड़े हुए हैं।

तसला रखे हुए हैं कस्सी रखी हुई है ईंटे रखे हुई है।

टोकरीयां रखी गई है लड़के की फोटो लगी हुई है अखबार मे।

गमला रखा गया है पेड़ लगे हुए पौधे लगे--

यहां पर वैन खड़ी हुई है।

लिखा हुआ है वैन के ऊपर पेड़ लगे हुए है।

यहां पर लोग दौड़ के जा रहे हैं बच्चे हैं यहां पर--

हॉस्पिटल बना हुआ है परदे लगे हुए हैं ए_सी लगा हुआ है।

मैडम है बच्चों को कंप्यूटर सीखा रही है।

यहां पर पार्क बना है मैदान बना हुआ हैं।

यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं ट्रांसफार्म लगा हुआ है।

टेबल लगी है कुर्सियां लगी हुई है कारपेट बिछे हुई है यहां।

यहां पर छोटे बच्चों को योगा सिखाई जा रही है।